यह किसी विद्यालय की तस्वीर है और विद्यालयों का जो यह ग्राउंड है नहीं ग्राउंड नहीं है यह रोड पे विद्यालय है।

जहाँ पे साफ़-सफाई का कोंई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पूरी तरीके से ध्वस्त हो चूका है यह पार्क --